बकरियां चर रही है उसके पीछे एक पेड़ लगा हुआ है इसके आसपास छोटी-छोटी घास लगी हुई है छोटे-छोटे पत्थर पड़े हुए है।

इस फोटो मे एक ट्रक दिखाई दे रहा है जिसमे भारत पेट्रोल पेट्रोलियम लिखा हुआ है इसके नीचे से एक पाइप नजर आ रहा है जिस--

इस फोटो में एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार नजर आ रही है जिसके ऊपर छोटे-छोटे पत्थर जमे हुए हैइस--

फोटो में बहुत से कपड़े टगे हुए है जिसके नीचे कुछ बॉक्स रखे हुए है और यह स्टैंड ब्लैक कलर के नज़र आ रहे है जिसके नीचे कपड़ा टगे हुए है कपड़ो के नीचे कुछ खाली बॉक्स भी नजर आ रही है।